तथा उन्हें नमूने में सजाया भी गया है और एक पुतला बैठा हुआ भी है जो कि अच्छा लग रहा है।

''कई प्रकार के कपड़े टंगे हुए है जो कि मेंस के हैं जिसमे सर्दियों के जैकेट जीन्स टी-शर्ट बोहोत कुछ है।''

तथा बच्चों के चलाने की गाड़ी भी है और यह अत्यधिक मनमोहक लग रही है तथा पीछे एस.बी.आई. कार्ड भी लगा हुआ है।

जो कि अत्यधिक अच्छे लग रहे हैं तथा कुछ आइसक्रीम्स भी रखी हुई हैं व पेप्सी व फ्रूटी की बोतल भी रखी हुई है।

झूला-झूलने की स्लाइड लगी हुई है और कुछ रंग-बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं।